इस चित्र में हमें बाथरूम के यूज करने वाले सामान--

अ सजाए गए दिख रहे हैं यहां पर हम--

इस तस्वीर में हम एक रेस्टोरेंट की तस्वीर देख रहे है।

एक डिश रखी हुई नजर आ रही है और एक गिलास भी नजर आ रहा है।

और यहां पर जो कुर्सियां हैं वो गुलाबी और--

हमें यहां पर एक दफ्तर दिखाई दे रहा है।

आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी दुकाने और लोगों की --

और ये छत पर कुछ रिपेयर करने की को--

मुरमत करने की कोश अ करते हुए दिख रहे हैं।

दिए गए चित्र में हमें एक हॉल नजर आ रहा है।

हमें यहां पर सड़क की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर हमको बहुत सारे--

इनमें से हमें हमारी आंखों के सामने एक--

ऑटो ऑटो व्हीलर और जा रहा है और--

यात्री भरे पड़े हैं और उसके पीछे से--

यहां पर हम एक चित्र दुकान का चित्र देख रहे हैं जो कि--

दिए गए चित्र में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है और--

आस-पास और भी दुकानें दिख रही हैं पर फिलहाल--

ऐसे यहां पर बहुत सारे अलग-अलग तरह के--

किचन तैयार किए गए हैं जैसे हम अपने घरों में--

बनवानाचाहते हैं उन्हीं किचन्स के मॉडल तैयार किए गए हैं।

और एक बड़ी सी ऊंची सी बहू मंजिला में--

नीचे कालीन पर बैठी हुई दिखाई दे रही।

सामान के शोरूम की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर--

प्लेट में दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही--

स्टाइलिश तरीके से प्रस्तुत की गई है और--

टेबल के सामने बैठने के लिए सोफा कुर्सी तैयार की गई--

यहां पर हम एक दवाइयों की दुकान का दृश्य देख रहे हैं।

औरपूरे कमरे में पंखा और लाइटिंग का भी पूरा प्रबंध किया गया।

फैक्ट्री है कोई गोडाउन का चित्र देख रहे हैं जिसका समा--

मिठाईकी दुकान देख रहे हैं जहां पर हम काउंटर पर बहुत सारी मिठाइयां सजी हुई देख रहे हैं अलग-अलग--

औरमिठाई के अलावा भी बहुत सारा सामान इस दुकान पर--

यहां पर हमें एक मेडिकल कैंप लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

लोगों का चेकअप करके उन्हें दवा--

यहां इस चित्र में हम एक हनुमान जी की--

बहुत ही विशाल मूर्ति देख रहे हैं और--

यहां पर रेल की पटरियां नजर आ रही है और रेल की पटरियों की--

देखें तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी फैक्ट्री--

इस चित्र में हमें एक लड़का अपने--

पानी डाल रहा है और छोटे-छोटे पौधों पर भी इसके घर के बगीचा बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है।

कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और--

बड़ी-बड़ी पायतें इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रही।

और अ आ स देख उनको प्राणायाम--

बहुत सारे कपड़े यहां पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

लेडीज सूट कुर्तीया वगैराह भी साथ में रखी हुई--

नए-नए डिजाइन के कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

लगाई गई है ताकि कस्टमर यहां पर--